इस इमेंज में कुछ लेडी है कुछ पूजा पाठ करती हुई दिखाई दे रही है इसमें एक ले एक गर्ल दिखाई दे रही है जो मोबाइल चलाती हुई नजर आ रही है जिन--

गर्ल्स खड़ी हुईं है जो सूट पहने हुऐ हैं कलेंडर टंगे टंगे हुए दिख--

इस इमेज मे कुछ मेले जैसा है नजारा दिखाई दे रहा है जिसमे--